यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जोकि हरे कलर का दिखाई दे रहा है पूरा हॉल |

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसके अलावा भी अन्य बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं बौंड़री दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहा है गेट के बाजू मे भी छोटा गेट दिखाई दे रहा है ।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है एक पेड़ दिखाई दे रहा है खंबा दिखाई दे रहा है नीचे कुछ गड़ियां रखी हुई है।

गाड़ियां ब्लू ब्लैक इत्यादि कलर के। कुछ खम्बें दिखायी दे रहे हैं जो कि फूलों की माला से सजे हुए।

यह एक शोरूम दिखाई दे रहा है जहां अंदर कुछ सामान रखा हुआ है एक स्टू--